यहां काफी बड़े बड़े पेड़ और पौधे लगे हुए हैं।

इनको बड़ोदा लिखा हुआ दिख रहा है।

दीवार का रंग सफेद रंग से रंगा हुआ हैं।

यह तस्वीर सनसेट व्यू को प्रदर्शित करता है।

यहां आठ सौ उन पचास लिखा हुआ दिख रहा है।

यहां ग्रॉसरी नीड्स लिखा हुआ है।

यहां पर साउंड सिस्टम भी रखे हुए हैं।

यहां एक एल_सी_डी टी_वी भी लगा हुआ है।

यहां काफी सारे बच्चे ड्राविंग करते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर काफी सारे बेंचेज लगे हुए हैं।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

यहां एक स्टेच्यू बना हुआ है।

यहां दरवाजा का रंग हरा रंग से रंगा हुआ है।

यहां हार्वेस्टर भी रखा हुआ है।

कुछ तार भी ताने हुए हैं।

यहां पे सोफे रखे हुए हैं।

यहां कुछ बाइक भी लगे हुए है।

यहां पर कुछ नाव चलते हुए नजर आ रहे हैं।

वहां पर कुछ घास भी पानी के अंदर उगे हुए हैं।

यहां लोहे के खंभे भी लगे हुए तथा तार भी दिख रहे हैं।

यहां बहुत सारे घर भी लगे हुए हैं।